मेरे प्यारे देशवासियो मन की बात में आप सबका स्वागत है
आज मन की बात की शुरुआत युवा देश के युवा वो गर्म जोशी वो देशभक्ति वो सेवा के रंग में रंगे नौजवान आप जानते हैं ना
नवम्बर महीने का चौथा रविवार हर साल एनसीसी डे के रूप में मनाया जाता है
आमतौर पर हमारी युवापीढ़ी को फ्रेंडशिप डे बराबर याद रहता है
लेकिन बहुत लोग हैं जिनको एनसीसी डे भी उतना ही याद रहता है
तो चलिए आज एनसीसी के बारे में बातें हो जाए
मुझे भी कुछ यादें ताजा करने का अवसर मिल जाएगा
सबसे पहले तो एनसीसी के सभी पूर्व और मौजूदा कैडेट को एनसीसीडे की बहुतबहुत शुभकामनाएं देता हूँ
क्योंकि मैं भी आप ही की तरह कैडेट रहा हूँ और मन से भी आज भी अपने आपको कैडेट मानता हूँ
यह तो हम सबको पता ही है एनसीसी यानी नेशनल कैडेट Corps
दुनिया के सबसे बड़े यूनिफॉर्म्ड यूथ आर्गेनाइजेशंस में भारत की एनसीसी एक है
यह एक ट्राइजर्विस आर्गेनाइजेशन है जिसमें सेना नौसेना वायुसेना तीनों ही शामिल हैं
लीडरशिप देशभक्ति सेल्फलेस सर्वाइस डिसिप्लिन हार्डवर्क इन सबको अपने कैरेक्टर का हिस्सा बना लें अपनी हैबिट्स बनाने की एक रोमांचक यात्रा मतलब एनसीसी
इस जर्नी के बारे में कुछ और अधिक बातें करने के लिए आज फ़ोन कॉल्स से कुछ नौजवानों से जिन्होंने अपने एनसीसी में भी अपनी जगह बनायी है
आइये उनसे बातें करते हैं
साथियो आप सब कैसे हैं
जय हिन्द प्रधानमंत्री जी
सर मेरा नाम जूनियर अंडर Officerतरन्नुम खान है
तरन्नुम आप कहाँ से हैं
मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ सर
तो एनसीसी में कितने साल कैसे कैसे अनुभवरहे आपके
सर मैं एनसीसी में 2017 में भर्ती हुई थी एंड ये तीन
साल मेरी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन साल रहे हैं
वाह सुनकर के बहुत अच्छा लगा
सर मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा सबसे अच्छा अनुभव जो रहा वो एक भारतश्रेष्ठभारत कैम्प में रहा था
ये हमारा कैम्प अगस्त में हुआ था जिसमें nerनॉर्थ ईस्टर्न रीजियन के बच्चे भी आये थे
उन कैडेट्स के साथ हम 10 दिन के लिये रहे
हमने उनका रहनसहन सीखा
हमने देखा कि उनकी लैंग्वेज क्या है
उनका ट्रेडिशन उनका कल्चर हमने उनसे ऐसी कई सारी चीजें सीखी
जैसेvaizomeका मतलब होता है हेलो वैसे ही हमारी कल्चरल नाइट हुई थीउसके अन्दर उन्होंने हमें अपना डांस सिखाया तेहरा कहते हैं उनके डांस को
और उन्होंने मुझे मेखालाmekhela पहनना भी सिखाया
मैं सच बताती हूँ उसके अन्दर बहुत खूबसूरत हम सभी लग रहे थे दिल्ली वाले एएस वेल एएस हमारे नागालैंड के दोस्त भी
हम उनको दिल्ली दर्शन पर भी लेकर गये थे जहां हमने उनको नेशनल वार मेमोरियल और इंडिया गेट दिखाया
वहां पर हमने उनको दिल्ली की चाट भी खिलायी भेलपूरी भी खिलाईलेकिन उनको थोड़ा तीखा लगा क्योंकि जैसा उन्होंने बताया हमको कि वो ज्यादातर सूप पीना पसंद करते हैं थोड़ी उबली हुई सब्जियां खाते हैं तो उनको खाना तो इतना भाया नहीं लेकिन उसके अलावा हमने उनके साथ काफी picturesखींची काफी हमने अनुभव शेयर करे अपने
आपने उनसे संपर्क बनाये रखा है
जी सर हमारे संपर्क उनसे अब तक बने हुए हैं
चलिए अच्छा किया आपने
और कौन है साथी आपके साथ
जय हिन्द सर
मैं सीनियर अंडर आफिसर सरी हरी gव
मैं बेंगलूरू कर्नाटका का रहने वाला हूँ
और आप कहाँ पढ़ते हैं
सर बेंगलूरू में क्रिस्तुजयंती कॉलेज में
अच्छा बेंगलूरू में ही हैं
सर मैं कल ही यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम सिंगापुर से वापिस आये थे
तो आपको मौका मिल गया वहां जाने का
कैसा अनुभव रहा सिंगापुर में
वहां पे छह सिक्सकाउंट्री आये थेजिनमें था
यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट्स ओएफ अमेरिका सिंगापुर ब्रूनेई होंगकोंग और Nepal
यहाँ पर हमें कम्बैट लेसन्स और इंटरनेशनल मिलिटरी एक्सरसाइज का एक एक्सचेंज सीखा था
यहाँ पर हमारा परफॉर्मेंस कुछ ही अलग था सिर
इनमें से हमें वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर activitiesसिखाया था और वाटर पोलो टूर्नामेंट में इंडिया टीम जीत हासिल किया था सिर
और कल्चरल में हम ओवरअलपरफॉर्मर्स थे सिर
हमारा ड्रिल और वर्ड ओएफ commandबहुत अच्छा लगा था सिर उनको
आप कितने लोग थे हरि
20 लोग सिर
हम 10 टेन बॉय 10 टेंगिर्ल थेसिर
हाँ यही भारत के सभी अलगअलग राज्य से थे
चलिए आपके सारे साथी आपका अनुभव सुनने के
लिए बहुत आतुर होंगे लेकिन मुझे अच्छा लगा
और कौन है आपके साथ
जय हिन्द सर
मेरा नाम है सीनियर अंडर आफिसर
विनोले किसो
मैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजियन नागालैंडस्टेट का है सर
हाँ विनोले बताइए क्या अनुभव है आपका
सर मैं एसटी
josephएस कॉलेजJakhama ऑटोनोमस में पढ़ाई कर रहा है bआ
हिस्टोरी होनर्स में
मैंने 2017 साल में एनसीसी जोइन किया और ये मेरे ज़िन्दगी का सबसे बड़ा और अच्छी डिसाइजन था सर
एनसीसी के कारण हिंदुस्तान में कहाँकहाँ जाने का मौका मिला है
सर मैंने एनसीसी जोइन किया और बहुत सीखा था और मुझे अपॉर्च्यूनिटीज भी बहुत मिली थी और मेरा एक एक्सपीरियंस था वो मैं आपको बताना चाहता है
मैंने इस साल 2019 जून महीने से एक कैंप अटेंड किया वो है कम्बाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैम्प और वो सेजोलिकॉलेज कोहिमा में हेल्ड किया
इस कैंप में 400 कैडेट्स ने अटेंड किया
तो नागालैंड में सारे आपके साथी जानना चाहते होंगे हिंदुस्तान में कहाँ गए क्याक्या देखा सब अनुभव सुनाते हो सबको
और कौन है आपके साथ
जय हिन्द सर मेरा नाम जूनियर अंडर आफिसर अखिल है
हाँ अखिल बताइए
मैं रोहतक हरियाणा का रहने वाला हूँ सर
मैं दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिजिक्स होनर्स कर रहा हूँ
सर मुझे एनसीसी में सबसे अच्छा डिसिप्लिन लगा है सर
इसने मुझे और ज्यादा रिस्पांसिबल सिटिजेन बनाया
एनसीसी कैडेट की ड्रिल यूनिफॉर्म मुझे बेहद पसंद है
कितने कैम्प करने का मौका मिला कहाँकहाँ जाने का मौका मिला
सर मैंने 3 कैम्प किये है सर
मैं हाल ही में
इंडियन मिलिटरी एकेडमी देहरादून में अटैचमेंट कैम्प का हिस्सा रहा हूँ
कितने समय का था
सर ये 13 दिन का कैम्प का था सर
सर मैंने वहाँ पर भारतीय फौज में अफसर कैसे
बनते हैं उसको बड़े करीब से देखा है और उसके बाद मेरा भारतीय फौज में अफसर बनने का संकल्प और ज्यादा दृढ़ हुआ है सर
और सर मैंने रिपब्लिक डे पराडे में भी हिस्सा
लिया था और वो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत ही गर्व की बात थी
मेरे से ज्यादा ख़ुशी मेरी माँ थी सर
हम सुबह 2 बजे उठ कर राजपथ पर प्रैक्टिस करने जाते थे तो जोश हम में इतना होता था कि वो देखने लायक था
बाकी फोर्सेस कंटिंजेंट के लोग जो हमें इतना प्रोत्साहित करते थे राजपथ पर मार्च करते वक़्त हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे सर
चलिए आप चारों से बात करने का मौका मिला
और वो भी एनसीसी डे पर
मेरे लिये बहुत ख़ुशी की बात है क्योंकि मेरा भी सौभाग्य रहा कि मैं भी बचपन में मेरे गाँव के स्कूल में एनसीसी कैडेट रहा था तो मुझे मालूम है कि ये डिसिप्लिन ये यूनिफॉर्म उसके कारण जो कॉन्फिडेंस लेवेल बढ़ता है ये सारी चीज़ें बचपन में मुझे एक एनसीसी कैडेट के रूप में अनुभव करने का मौका मिला था
प्रधानमंत्री जी मेरा एक सवाल है
हाँ बताइए
कि आप भी एक एनसीसी का हिस्सा रहे हैं
कौन विनोले बोल रही हो
हाँ विनोले बताइए
क्या आपको कभी भी पनिशमेंट मिली थी
हँस कर इसका मतलब कि आप लोगों को
पनिशमेंट मिलती है
हां सर
जी नहीं मुझे ऐसा कभी हुआ नहीं क्योंकि मैं
बहुत ही एक प्रकार से डिसिप्लिन मैं मानने वाला था लेकिन एक बार जरुर मिसंडरस्टैंडिंग हुआ था
जब हम कैम्प में थे तो मैं एक पेड़ पर चढ़ गया था
तो पहले तो ऐसा ही लगा कि मैं कोई कानून तोड़दिया है लेकिन बाद में सबको ध्यान में आया कि वहाँ ये पतंग की डोर में एक पंखी फंस गया था
तो उसको बचाने के लिए मैं वहाँ चढ़ गया था
तो खैर पहले तो लगता था कि मुझ पर कोई डिसिप्लिन एक्शन होंगे लेकिन बाद में मेरी बड़ी वाहवाही हो गयी
तो इस प्रकार से एक अलग ही अनुभव आया मुझे
जी सर ये जान कर बहुत अच्छा लगा सर
मैं तरन्नुम बात कर रही हूँ
हाँ तरन्नुम बताइए
अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे एक सवाल
करना चाहूंगी सर
जी जी बताइए
सर आपने अपने संदेशों में हमें कहा है कि हर
भारतीय नागरिक को 3 सालों में 15 जगह तो जाना ही चाहिए
आप हमें बताना चाहेंगे कि हमें कहाँ जाना चाहिए और आपको किस जगह जा कर सबसे अच्छा महसूस हुआ था
वैसे मैं हिमालय को बहुत पसंद करता रहता हूँ
लेकिन फिर भी मैं भारत के लोगों से आग्रह
करूँगा कि अगर आपको प्रकृति से प्रेम है
घने जंगल झरने एक अलग ही प्रकार का माहौल
देखना है तो मैं सबको कहता हूँ आप नॉर्थ ईस्ट जरुर जाइए
ये मैं हमेशा बताता हूँ और उसके कारण नॉर्थ
ईस्ट में टूरिज्म भी बहुत बढ़ेगा इकोनॉमी को भी बहुत फायदा होगा और एक भारतश्रेष्ठ भारत के सपने को भी वहाँ मजबूती मिलेगी
जी सर
लेकिन हिंदुस्तान में हर जगह पर बहुत कुछ
देखने जैसा हैअध्ययन करने जैसा है और एक प्रकार से आत्मा साफ़ करने जैसा है
प्रधानमंत्री जी मैं श्री हरि बोल रहा हूँ
जी हरि बताइए
मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप एक
पॉलिटिशियन न होते तो आप क्या होते
अब ये तो बड़ा कठिन सवाल है क्योंकि हर बच्चे
के जीवन में कई पड़ाव आते हैं
कभी ये बनने का मन करता है कभी वो बनने का मन करता है लेकिन ये बात सही है कि मुझे कभी राजनीति में जाने का मन नहीं था न ही कभी सोचा था लेकिन अब पहुँच गया हूँ तो जीजान से देश के काम आऊँ उसके लिए सोचता रहता हूँ और इसलिए अब मैं यहाँ न होता तो कहाँ होता ये सोचना ही नहीं चाहिए मुझे
अब तो जीजान से जहाँ हूँ वहाँ जी भरकर के जीना चाहिए जीजान से जुटना चाहिए और जमकर के देश के लिए काम करना चाहिए
न दिन देखनी है न रात देखनी है बस यही एक मकसद से अपने आप को मैंने खपा दिया है
प्रधानमंत्री जी
आप दिन में इतने बसी रहते हो तो मेरी ये जिज्ञासा
थी जानने की कि आपको टीवी देखने का फिल्म देखने का या किताब पढ़ने का समय मिलता है
वैसे मेरी किताब पढ़ने की रूचि तो रहती थी
फिल्म देखने की कभी रूचि भी नहीं रही उसमें समय का बंधन तो नहीं है और न ही उस प्रकार से टीवी देख पाता हूँ
बहुत कम
कभीकभी पहले डिस्कवरी चैनल देखा करता था जिज्ञासा के कारण
और किताबें पढ़ता था लेकिन इन दिनों तो पढ़ नहीं पाता हूँ और दूसरा गूगल के कारण भी आदतें ख़राब हो गई हैं क्योंकि अगर किसी रेफरेंस को देखना है तो तुरंत शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं
तो कुछ आदतें जो सबकी बिगड़ी हैं मेरी भी बिगड़ी है
चलिए दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करने के लिए और मैं आपके माध्यम से एनसीसी के सभी कैडेट्स को बहुतबहुत शुभकामनाएँ देता हूँ
बहुतबहुत धन्यवाद दोस्तों थांक यू
सभी एनसीसी कैडेट्स बहुतबहुत धन्यवाद सर थांक यू
थांक यू थांक यू
सभी एनसीसी कैडेट्स जय हिन्द सर
सभी एनसीसी कैडेट्स जय हिन्द सर
जय हिन्द जय हिन्द
मेरे प्यारे देशवासियो हम सभी देशवासियों को ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि 7 दिसम्बर को आर्मेड फोर्सेस फ्लैग डे मनाया जाता है
ये वो दिन है जब हम अपने वीर सैनिकों को उनके पराक्रम को उनके बलिदान को याद तो करते ही हैं लेकिन योगदान भी करते हैं
सिर्फ सम्मान का भाव इतने से बात चलती नहीं है
सहभाग भी जरुरी होता है और 07 दिसम्बर को हर नागरिक को आगे आना चाहिए
हर एकके पास उस दिन आर्मेड फोर्सेस का फ्लैग होना ही चाहिए और हर किसी का योगदान भी होना चाहिए
आइये इस अवसर पर हम अपनी आर्मेड फोर्सेस के अदम्य साहस शौर्य और समर्पण भाव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और वीर सैनिको का स्मरण करें
मेरे प्यारे देशवासियो भारत में फिट इंडिया मूवमेंट से तो आप परिचित हो ही गए होंगे
CBSE ने एक सराहनीय पहल की है
फिट इंडिया सप्ताह की
Schools फिट इंडिया सप्ताह दिसम्बर महीने में कभी भी मना सकते हैं
इसमें फिटनेस को लेकर कई प्रकार के आयोजन किए जाने हैं
इसमें क्विज निबंध लेख चित्रकारी पारंपरिक और स्थानीय खेल योगासन डांस एवं खेलकूद प्रतियोगिताएं शामिल हैं
फिट इंडिया सप्ताह में विद्यार्थियों के साथसाथ उनके शिक्षक और मातापिता भी भाग ले सकते हैं
लेकिन ये मत भूलना कि फिट इंडिया मतलब सिर्फ दिमागी कसरत कागजी कसरत या लैपटॉप या कम्प्यूटर पर या मोबाइलफोन पर फिटनेस की अप्प देखते रहना
जी नहीं पसीना बहाना है
खाने की आदतें बदलनी है
अधिकतम फोकस एक्टिविटी करने की आदत बनानी है
मैं देश के सभी राज्यों के स्कूल बोर्ड एवं स्कूल प्रबंधनसे अपील करता हूँ कि हर स्कूल में दिसम्बर महीने मेंफिट इंडिया सप्ताह मनाया जाए
इससे फिटनेस की आदत हम सभी की दिनचर्या में शामिल होगी
फिट इंडिया मूवमेंट में फिटनेस को लेकर स्कूलों की रैंकिंग की व्यवस्था भी की गई हैं
इस रैंकिंग को हासिल करने वाले सभी स्कूलफिट इंडियालोगो और फ्लैग का इस्तेमाल भी कर पाएंगे
फिट इंडियापोर्टल पर जाकर स्कूल स्वयं को फिट घोषित कर सकते हैं
फिट इंडियाथ्री स्टार और फिट इंडिया फाइव स्टार रेटिंग्स भी दी जाएगी
मैं अनुरोध करते हूँ कि सभी स्कूलफिट इंडियारैंकिंग में शामिल हों और फिट Indiaयह सहज स्वभाव बने
एक जनांदोलन बने
जागरूकता आए
इसके लिए प्रयास करना चाहिए
मेरे प्यारे देशवासियो हमारे देश इतना विशाल है
इतना विविधिताओं से भरा हुआ है
इतना पुरातन है कि बहुत सी बातें हमारे ध्यान में ही नहीं आती हैं और स्वाभाविक भी है
वैसी एक बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ
कुछ दिन पहले माइगोव पर एक कमेंट पर मेरी नजर पड़ी
ये कमेंट असम के नौगाँव के श्रीमान रमेश शर्मा जी ने लिखा था
उन्होंने लिखा ब्रहमपुत्र नदी पर एक उत्सव चल रहा है
जिसका नाम है ब्रहमपुत्र पुष्कर
04 नवम्बर से 16 नवम्बर तक ये उत्सव था और इस ब्रहमपुत्र पुष्कर में शामिल होने के लिए देश के भिन्नभिन्न भागों से कई लोग वहाँ पर शामिल हुए हैं
ये सुनकर आपको भी आश्चर्य हुआ ना
हाँ यही तो बात है ये ऐसा महत्वपूर्ण उत्सव है और हमारे पूर्वजों ने इसकी ऐसी रचना की है कि जब पूरी बात सुनोगे तो आपको भी आश्चर्य होगा
लेकिन दुर्भाग्य से इसका जितना व्यापक प्रचार होना चाहिए
जितनी देश के कोनेकोने में जानकारी होनी चाहिए उतनी मात्रा में नहीं होती है
और ये भी बात सही है इस पूरा आयोजन एक प्रकार से एक देशएक सन्देश और हम सब एक है
उस भाव को भरने वाला है ताकत देने वाला है
सबसे पहले तो रमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मन की बात के माध्यम से देशवासियों के बीच ये बात शेयर करने का निश्चय किया
आपने पीड़ा भी व्यक्त की है कि है इतने महत्वपूर्ण बात की कोई व्यापक चर्चा नहीं होती है प्रचार नहीं होता है
आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ
देश में ज्यादा लोग इस विषय में नहीं जानते हैं
हाँअगर शायद किसी ने इसको इंटरनेशनल रिवर फेस्टिवल कह दिया होता कुछ बड़े शानदार शब्दों का उपयोग किया होता तो शायद हमारे देश में कुछ लोग है जो ज़रूर उस पर कुछ न कुछ चर्चाएँ करते और प्रचार भी हो जाता
मेरे प्यारे देशवासियों पुष्करम पुष्करालू पुष्करः क्या आपने कभी ये शब्द सुने हैं क्या आप जानते हैं आपको पता है ये क्या है मै बताता हूँ यह देश कि बारह अलग अलग नदियों पर जो उत्सव आयोजित होते हैं उसके भिन्न भिन्न नाम है
हर वर्ष एक नदी पर यानि उस नदी का नंबर फिर बारह वर्ष के बाद लगता है और यह उत्सव देश के अलगअलग कोने की बारह नदियों पर होता है बारी बारी से होता है और बारह दिन चलता है कुम्भ की तरह ही ये उत्सव भी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है और एक भारतश्रेष्ठ भारत के दर्शन कराता है
पुष्करम यह ऐसा उत्सव है जिसमें नदी का मह्त्मय नदी का गौरव जीवन में नदी की महत्ता एक सहज रूप से उजागर होती है
हमारे पूर्वजो ने प्रकृति को पर्यावरण को जल को जमीन को जंगल कोबहुत अहमियत दी
उन्होंने नदियों के महत्व को समझा और समाज को नदियों के प्रति सकारात्मत भाव कैसा पैदा हो एक संस्कार कैसे बनें नदी के साथ संस्कृति की धारा नदी के साथ संस्कार की धारा नदी के साथ समाज को जोड़ने का प्रयास ये निरंतर चलता रहा और मजेदार बात ये है कि समाज नदियों से भी जुड़ा और आपस में भी जुड़ा
पिछले साल तमिलनाडु के तामीर बरनी नदी पर पुष्करम हुआ था
इस वर्ष यह ब्रह्मपुत्र नदी पर आयोजित हुआ और आने वाले सालतुंगभद्रा नदी आँध्रप्रदेश तेलंगाना और कर्नाटक में आयोजित होगा
एक तरह से आप इन बारह स्थानों की यात्रा एक टूरिस्ट सर्किट के रूप में भी कर सकते हैं
यहाँ मैं असम के लोगों की गर्मजोशी उनके आतिथ्य कीसराहना करना चाहता हूँ जिन्होंने पूरे देश से आये तीर्थयात्रियों का बहुत सुन्दर सत्कार किया
आयोजकों ने स्वच्छता का भी पूरा ख्याल रखा
प्लास्टिक फ्री ज़ोन सुनिश्चित किये
जगहजगह बियो टॉयलेट्स की भी व्यवस्था की
मुझे उम्मीद है कि नदियों के प्रति इस प्रकार का भाव जगाने का ये हज़ारों साल पुराना हमारा उत्सव भावी पीढ़ी को भी जोड़े
प्रकृति पर्यावरण पानी ये सारी चीजें हमारे पर्यटन का भी हिस्सा बनें जीवन का भी हिस्सा बनें
मेरे प्यारे देशवासियोंNamo अप्प पर मध्यप्रदेश से बेटी श्वेता लिखती है और उसने लिखा है सरमैं क्लास 9thमें हूँ मेरी बोर्ड की परीक्षा में अभी एक साल का समय है लेकिन मैं स्टूडेंट्स और एक्साम वॉरियर्स के साथ आपकी बातचीत लगातार सुनती हूँ मैंने आपको इसलिए लिखा है क्योंकि आपने हमें अब तक ये नहीं बताया है कि अगली परीक्षा पर चर्चा कब होगी
कृपया आप इसे जल्द से जल्द करें
अगर सम्भव हो तो जनवरी में ही इस कार्यक्रम का आयोजन करें
साथियोमन की बात के बारे में मुझे यही बात बहुत अच्छी लगती है मेरे युवामित्र मुझे जिस अधिकार और स्नेह के साथ शिकायत करते हैं आदेश देते हैं सुझाव देते हैं यह देख कर मुझे बहुत खुशी होती है
श्वेता जी आपने बहुत ही सही समय पर इस विषय को उठाया है
परीक्षाएँ आने वाली हैंतो हर साल की तरह हमें परीक्षा पर चर्चा भी करनी है
आपकी बात सही है इस कार्यक्रम को थोड़ा पहले आयोजित करने की आवश्यकता है
पिछले कार्यक्रम के बाद कई लोगों ने इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अपने सुझाव भी भेजे हैं और शिकायत भी की थी कि पिछली बार देर से हुआ था परीक्षा एकदम से निकट आ गई थी
और श्वेता का सुझाव सही है कि मुझे इसको जनवरी में करना चाहिए एचआरडी मिनिस्ट्री और माइगोव की टीम मिलकर इस पर काम कर रही हैं
लेकिनमैं कोशिश करुगां इस बार परीक्षा पर चर्चा जनवरी की शुरू में या बीच में हो जाए
देश भर के विद्यार्थियोंसाथियों के पास दो अवसर हैं
पहला अपने स्कूल से ही इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना
दूसरा यहाँ दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में भाग लेना
दिल्ली के लिए देशभर से विद्यार्थियों का चयन माइगोव के माध्यम से किया जाएगा
साथियो हम सबको मिलकर परीक्षा के भय को भगाना है
मेरे युवासाथी परीक्षाओं के समय हँसतेखिलखिलाते दिखें पेरेंट्स तनाव मुक्त होंटीचर्स आश्वस्त हों इसी उद्देश्य को लेकर पिछले कई सालों से हममन की बात के माध्यम से परीक्षा पर चर्चाTown हॉल के माध्यम से या फिर एक्साम warriorएस बुक के माध्यम से लगातार प्रयास कर रहें हैं
इस मिशन को देशभर के विद्यार्थियों नेपेरेंट्स ने और टीचर्स ने गति दी इसके लिए मैं इन सबका आभारी हूँऔर आने वाली परीक्षा चर्चा का कार्यक्रम हम सब मिलकर के मनाएँ आप सब को निमंत्रण हैं
साथियो पिछले मन की बात में हमने 2010 में अयोध्या मामले में आये इलाहाबाद हाई कोर्ट के Judgementके बारे में चर्चा की थी और मैंने कहा था कि देश ने तब किस तरह से शांति और भाईचारा बनाये रखा था
निर्णय आने के पहले भी और निर्णय आने के बाद भी
इस बार भी जब 9 नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो 130 करोड़ भारतीयों नेफिर से ये साबित कर दिया कि उनके लिए देशहित से बढ़कर कुछ नहीं है
देश में शांति एकता और सदभावना के मूल्य सर्वोपरि हैं
राम मंदिर पर जब फ़ैसला आया तो पूरे देश ने उसे दिल खोलकर गले लगाया
पूरी सहजता और शांति के साथ स्वीकार किया
आजमन की बात के माध्यम से मैं देशवासियों को साधुवाद देता हूँ धन्यवाद देना चाहता हूँ
उन्होंने जिस प्रकार के धैर्य संयम और परिपक्वता का परिचय दिया है मैं उसके लिए विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूँ
एक ओर जहाँ लम्बे समय के बाद कानूनी लड़ाई समाप्त हुई है वहीं दूसरी ओर न्यायपालिका के प्रति देश का सम्मान और बढ़ा है
सही मायने में ये फैसला हमारी न्यायपालिका के लिए भी मील का पत्थर साबित हुआ है
सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब देश नई उम्मीदों और नई आकांशाओं के साथ नए रास्ते पर नये इरादे लेकर चल पड़ा है
न्यू इंडियाइसी भावना को अपनाकर शांति एकता और सदभावना के साथ आगे बढ़े यही मेरी कामना है हम सबकी कामना है
मेरे प्यारे देशवासियो हमारी सभ्यता संस्कृति और भाषाएं पूरे विश्व को विविधता में एकता का सन्देश देती हैं
130 करोड़ भारतीयों का ये वो देश है जहाँ कहा जाता था कि कोसकोस पर पानी बदले और चार कोस पर वाणी
हमारी भारत भूमि पर सैकड़ों भाषाएँ सदियों से पुष्पित पल्लवित होती रही हैं
हालाँकि हमें इस बात की भी चिंता होती है कि कहीं भाषाएँ और बोलियाँ ख़त्म तो नहीं हो जाएगी पिछले दिनों मुझे उत्तराखंड के धारचुला की कहानी पढ़ने को मिली
मुझे काफी संतोष मिला
इस कहानी से पता चलता है कि किस प्रकार लोग अपनी भाषाओँ उसे बढ़ावा देने के लिए आगे आ रहें है
कुछInnovative कर रहें हैं धारचुला खबर मैंने मेरा ध्यान भी इसलिए गया कि किसी समयमैं धारचूला में आतेजाते रुका करता था
उस पार नेपाल इस पार कालीगंगा तो स्वाभाविक धारचूला सुनते ही इस खबर पर मेरा ध्यान गया
पिथौरागढ़ के धारचूला में रंग समुदाय के काफ़ी लोग रहते हैं इनकी आपसी बोलचाल की भाषा रगलो है
ये लोग इस बात को सोचकर अत्यंत दुखी हो जाते थे कि इनकी भाषा बोलने वाले लोग लगातार कम होते जा रहे हैं फिर क्या था एक दिन इन सबने अपनी भाषा को बचाने का संकल्प ले लिया
देखतेहीदेखते इस मिशन में रंग समुदाय के लोग जुटते चले गए
आप हैरान हो जायेंगे इस समुदाय के लोगों की संख्या गिनती भर की है
मोटामोटा अंदाज़ कर सकते हैं कि शायद दस हज़ार हो लेकिन रंग भाषा को बचाने के लिए हर कोई जुट गया चाहे चौरासी साल के बुज़ुर्ग दीवान सिंह हों या बाईस वर्ष की युवा वैशाली गर्ब्याल प्रोफेसर हों या व्यापारी हर कोईहर संभव कोशिश में लग गया
इस मिशन में सोशल मिडिया का भी भरपूर प्रयोग किया गया
कईWhatsapp ग्रुप बनाए गए
सैकड़ों लोगों को उस पर भी जोड़ा गया
इस भाषा की कोई लिपि नहीं है
सिर्फ बोलचाल में ही एक प्रकार से इसका चलन है
ऐसे में लोग कहानियाँ कवितायेँ और गाने पोस्ट करने लगे
एकदूसरे की भाषा ठीक करने लगे
एक प्रकार से Whatsappही क्लासरूम बन गया जहाँ हर कोई शिक्षक भी है और विद्यार्थी भीरंगलोक भाषा को संरक्षित करने का एक इस प्रयास में है
तरहतरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है पत्रिका निकाली जा रही है और इसमें सामाजिक संस्थाओं की भी मदद मिल रही है
साथियो ख़ास बात ये भी है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2019 यानी इस वर्ष को इंटरनेशनल यियर ओएफ इंडिजिनस लैंग्वेज घोषित किया है
यानी उन भाषाओँ को संरक्षित करने पर जोर दिया जा रहा है जो विलुप्त होने के कगार पर है
डेढ़सौ साल पहले आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने भी कहा था
निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल
ज्ञान के मिटत न हिय को सूल
अर्थात मातृभाषा के ज्ञान के बिना उन्नति संभव नहीं है
ऐसे में रंग समुदाय की ये पहल पूरी दुनिया को एक राह दिखाने वाली है
यदि आप भी इस कहानी से प्रेरित हुए हैं तो आज से ही अपनी मातृभाषा या बोली का खुद उपयोग करें
परिवार को समाज को प्रेरित करें
19वीं शताब्दी के आखरी काल में महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी नें कहा था और तमिल में कहा था
वो भी हम लोगों के लिए बहुत ही प्रेरक है
सुब्रमण्यम भारती जी ने तमिल भाषा में कहा था
मुप्पदु कोडी मुगमुडैयाळ
उयिर् मोइम्बुर ओंद्दुडैयाळ
इवळ सेप्पु मोळी पधिनेट्टूडैयाळ
एनिर्सिन्दनैओंद्दुडैयाळ
मुप्पधु कोड़ी मुगामुदायल एनिल माईपुरम ओंद्रुदयाल
इवल सेप्पुमोझी पढिनेतुदयाल एनिल सिंधनई ओंद्रुदयाल
और उस समय ये 19वीं शताब्दी के ये आखरी उत्तरार्ध की बात है
और उन्होंने कहा है भारत माता के 30 करोड़ चेहरे हैं लेकिन शरीर एक है
यह 18 भाषाएँ बोलती हैं लेकिन सोच एक है
मेरे प्यारे देशवासियो कभीकभी जीवन में छोटीछोटी चीज़ें भी हमें बहुत बड़ा सन्देश दे जाती हैं
अब देखिये न मीडिया में ही स्कूबा डाइवर्स की एक स्टोरी पढ़ रहा था
एक ऐसी कहानी है जो हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है
विशाखापत्तनम में गोताखोरी का प्रशिक्षण देने वाले स्कूबा डाइवर्स एक दिनmangamaripeta बीच पर समुद्र से लौट रहे थे तो समुद्र में तैरती हुई कुछ प्लास्टिक की बोतलों और पाउच से टकरा रहे थे
इसे साफ़ करते हुए उन्हें मामला बड़ा गंभीर लगा
हमारा समुद्र किस प्रकार से कचरे से भर दिया जा रहा है
पिछले कई दिनों से ये गोताखोर समुद्र में तट के करीब 100 मीटर दूर जाते है गहरे पानी में गोता लगाते हैं और फिर वहाँ मौजूद कचरे को बाहर निकालते हैं
और मुझे बताया गया है कि 13 दिनों में ही यानी 2 सप्ताह के भीतरभीतर करीबकरीब 4000 किलो से अधिक प्लास्टिक वास्ते उन्होंने समुद्र से निकाला है
इन स्कूबा डाइवर्स की छोटीसी शुरुआत एक बड़े अभियान का रूप लेती जा रही है
इन्हें अब स्थानीय लोगों की भी मदद मिलने लगी है
आसपास के मछुआरें भी उन्हें हर प्रकार की सहायता करने लगे है
जरा सोचिये इस स्कूबा diversसे प्रेरणा लेकर अगर हम भी सिर्फ अपने आसपास के इलाके को प्लास्टिक के कचरे से मुक्त करने का संकल्प कर लें तो फिर प्लास्टिक मुक्त भारत पूरी दुनिया के लिए एक नई मिसाल पेश कर सकता है
मेरे प्यारे देशवासियो दो दिन बाद 26 नवम्बर है
यह दिन पूरे देश के लिए बहुत ख़ास है
हमारे गणतंत्र के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं
और इस बार का संविधान दिवस अपने आप में विशेष है क्योंकि इस बार संविधान को अपनाने के 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं
इस बार इस अवसर पर पार्लियामेंट में विशेष आयोजन होगा और फिर साल भर पूरे देशभर में अलगअलग कार्यक्रम होंगे
आइये इस अवसर पर हम संविधान सभा के सभी सदस्यों को आदरपूर्वक नमन् करें अपनी श्रद्धा अर्पित करें
भारत का संविधान ऐसा है जो प्रत्येक नागरिक के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करता है और यह हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता की वजह से ही सुनिश्चित हो सका है
मैं कामना करता हूँ कि संविधान दिवस हमारे संविधान के आदर्शों को कायम रखने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की हमारी प्रतिबद्धता को बल दे
आखिर यही सपना तो हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा था
मेरे प्यारे देशवासियो ठंड का मौसम शुरू हो रहा है गुलाबी ठंडअब महसूस हो रही है
हिमालय के कुछ भाग बर्फ की चादर ओढ़ना शुरू किये हैं लेकिन ये मौसम फिट इंडिया मोमेंट का है
आप आपका परिवार आपके मित्रवार्तूरआपके साथी मौका मत गंवाइये
फिट इंडिया मोमेंट को आगे बढ़ाने के लिए मौसम का भरपूर फ़ायदा उठाइए
बहुतबहुत शुभकामनाएँ
बहुतबहुत धन्यवाद